इस फोटो इस फोटो में भी एक सैलून दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है दो बच्चे बैठे हुए हैं।

इस फोटो में बहोत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि कार्ड शीट से कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं।